इस तस्वीर में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है जिसके सामने--

कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं।

इस तस्वीर में हमें एक होटल का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक गेस्ट हाउस की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां वैष्णवी गेस्ट हाउस --

काले कलर की दरवाजा दिखाई दे रही है।

गोल नवा आकृति बनी हुई है।

इस तस्वीर में हमें मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है।

जहां ढेर सारे कार्टूनस पड़े हुए हैं।

मिठाई के कार्टून्स हैं कुछ के अंदर --

पीछे एक राजा के लिबाज में दिखाई दे रहे हैं।

एक बॉटल रखी हुई है।

ये एक घर के अंदर प्रयोग हो रहा है।

दो-तीन पोस्टर डांस करते हुए--

एक पीले कलर की इमारत दिखाई दे रही है।

सफेद लिबाज में है और--

दिखाई दे रहा है जहां एक पुलिस --

इस तस्वीर में हमें कई सारी बचियाएं--

एक बच्ची कैची लेकर एक पेपर --

काटते हुए दिखाई दे रही है एक--

इस तस्वीर में हमें बस के अंदर का--

इस तस्वीर में हमें सरक दिखाई दे रही है सरक पे कुछ बाइक्स हैं।

उनके साथ कुछ व्यक्ति भी हैं।

दाढ़ी बनाते हुए दिखाई दे रही है।

सलून लाल कलर की दिखाई दे रही है।

और कई सारे बैलूंस भी लगे हुए ऊपर दिखाई दे रही है।

जो सफेद कलर की है उसके सामने एक ब्लू कलर की कार खड़ी है।

और कई बाइक्स भी खरी है एक व्यक्ति हाथ में कुछ लिए हुए दिखाई दे रहा है।

नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है तस्वीर में।

एक बच्ची हाथ में कलर रंगे हुए दिखाई दे रही है और कई सारे टेबल्स लगे हुए दिखाई दे रही है।

ढेर सारी बुक्स दिखाई दे रही है जिन पे मां लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई है।

और ये भरत नाट्यम करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं।

खरा हुआ दिखाई दे रहा है जो--

इस तस्वीर में हमें एक खाली सरक दिखाई गई है जिस सरक पे एक अ स्कूटी पे बुजुर्ग व्यक्ति कहीं जा रहे हैं।

लाल कलर की कुर्सी लगी हुई है।

इस तस्वीर में हमें बॉम्बई कुल्फी --

और ये छत पे है नीचे एक सीढ़ी जाते हुए दिखाई दे रही है।

कंप्यूटर पे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे है उनके बगल में पीले कलर की सूट पहने हुई एक लड़की बैठ के कुछ करते हुए दिखाई --

इस तस्वीर में एक जिम की तस्वीर है।

जहां कुछ महिलाएं योगा करते हुए दिखाई दे रही हैं एक पुरुष--

दिखाई दे रहे हैं एक पुरुष बैठ के व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक इमारत हमें दिखाई दे रही है जो--

और हरेक कलर की पैर दिखाई दे रही हैं कुछ तार लटक रही है।

थोरी गंदी दीवार दिखाई दे रही है।

जिसे काटकर एक सिरी का आकार दिया गया है।

हरे-हरे कलर की घास से लिपटी हुई दिखाई दे रही है पहाड़--

काले रंग का दिखाई दे रहा है।

बहुत गंदा भी लग रहा है।

की कुर्सी है लाल कलर की टेबल है।

सामने कुछ और टेबल्स और कुर्सियां--

जिसके सामने काले रंग की गाड़ी हमें दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में कई सारी बांस दिखाई दे रही है।

और कई सारी धूल मिट्टी परी हुई है।

वातावरण काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

गुलाबी कलर की है और छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है।

कुछ बच्चियां खेल रही है।

इस तस्वीर में हमें एक खिलौने की दुकान दिखाई गई है।

जैकेट स्वेटर पहने हुए बहुत सारे व्यक्ति हैं जो घूम रहे हैं।

हरे कलर की दीवार है जिस पे डांस एंड --

और हेलमेट्स भी रखी हुई है।

तीन चार साइकिल रखी हुई है ।

पीले कलर की दीवार है ।

दो-तीन बॉक्स की साउंड है ।

जिम की तस्वीर है जहां कई सारे कार्ड मिल रखे हुए हैं।

उसमें से एक साइकिल है।

फर्श काफी साफ है लाइटनिंग अच्छी से की गई है।

इस तस्वीर में कई सारी पुस्तक शीशे के अंदर--

और भूरे कलर की बेंच लगी हुई है।

एक खिड़की है एक सफेद कलर की बोर्ड लगी है।

ए_पि थ्री वन गाड़ी नंबर है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है ।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति लाल पोशाक म--

गले में पीले कलर की मफलर डाले हुए है।

और देखने में काफी सुंदर लग रहा है।